यहाँ पर बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है सामने की ओर में एक बिल्डिंग बनी गई है। यहाँ पे बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है लोग जो है कुछ देख रहे है देखने पर लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रदर्शनी चल रही है।

यहाँ पर बहुत बड़ा हाल है हाल में बहुत सारी चेयर्स लगाई गई है चेयर्स पर सफेद कलर का कपड़ा बिछाया गया है और चेयर्स की बाजू में बैलून्स के खंभे लगाए गए है।

चादर बिछाया गया है लाल कलर का सामने एक स्टेज है स्टेज को डेकोरेट किया गया है और उसपे एक चेयर रखी गई है देखने पर लग रहा है इंगेजमेंट का माहौल है।

यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है। देखने पर लग रहा है कि यहाँ पे गणेश जी की स्थापना की गई है आजू-बाजू में कुछ मूस रखी गई हैं।

यहाँ पे एक मस्जिद है मस्जिद को जो है काफी बड़ी है और इसमें हॉल्स भी बनाया गया है इसमें खम्भे लगाए गए है जो कि काफी --

यहां पर सरस्वती जी की और गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि टेबल पर रखी हुई है उनके सामने एक थाली रखी है आजू-बाजू में दो पेड़ है जो कि प्लास्टिक के है।

यहां पर बहोत बड़ा हाल है हाल में एक डेक्स रखी गई है डेक्स के ऊपर एक गुलदस्ता रखा हुआ है जिसमें फ्लावर्स लगे हुए है जिसमें लाल और गुलाबी कलर के फ्लावर्स है।